यहां पर लड़के खेलने आते हैं चिड़िया बल्ला। यहां पे काफी सारी लाइट लगी हैं। यहां पे हरे कलर का भी डला है नीचे और लड़के खेल भी रह हैं यहां पे ।

अच्छी चीजे़ खरीदते हैं। यहाँ पर सस्ता और अच्छा समान भी मिलता है।

यह सफेद कलर की बकरियाँ हैं जो कि कुछ खा रही हैं। ये सफेद लाल और सफेद लाल भी हैं इन --

ये इनका काम इनको दूध के लिए भी लाया जाता है। इनका दूध भी निकाला जाता है जो कि बहोत चीजों में काम भी आता है।

पीते है और यहां पर उनके बैठने की भी अच्छी अच्छी जगह है और बहुत सुंदर सुंदर वेराइटी के तोते पाले जाते हैं।

थालियाँ और चम्मच भी लगी हुईं हैं। जो की लग रहा है। जैसे की कोई पार्टी हो और अंधेरे की है। मतलब ये रात का सीन है।

यहां पे नीले कलर कि एक चटाई भी डली हुई है और पत्थर की भी हैं कुछ की भी हैं।